सभी बच्चे उत्साह के साथ क्रिकेट देख रहे है यहा पे बहुत सारी जनता क्रिकेट देखने के लिए आई है।

यहा पे एक सड़क है सड़क के कुछ दूर पे एक स्कूल भी है एक येलो कलर की वेन खड़ी है। इस स्कूल बस सामने ही एक बोलोरा भी रखी हुई है।

यहाँ पर एक कई सारी वैट लोस करने वाली मशीन रखी हुई है। ए_सी लगा हुआ है।

यहा पे बहुत सारे पथरे पत्थर से बनी दीवारे घर भी है एक पत्थर की एक दीवार बनी हुई है।

उधर जा रही है आस-पास और भी वृक्ष आए हुए हैं। यहां पे एलोवेरा नीम आदि के पेड़ भी लगे हुए हैं।

ये एक खेल का मैदान है यहां पे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है कई सारे लोग खड़े हैं बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी है यहां पे एक बिजली का टावर भी है।

एक बाजार का दृश्य है सड़क पर पानी आ रहा है फिर लोग इधर से उधर जा रहे है एक प्यारा सा स्टॉल भी है फल की दुकान है कपड़ो की है मसलो की ----

पड़ा हुआ है एक पानी की बोरी पड़ी हुई है कई सारी कुर्सियां भी यहां पे पड़ी हुई है।